चारों तरफ से पक्का किया हुआ है और एक बोतल रखी हुई है जिस पर ब्लैक ।

रंग कलर है और पहाड़ी में एक आदमी लाल कपड़ों में।

पीले रंग से नंबर प्लेट लगाई हुई है जिस पर जीए जीरो सेवन एफ --

बसेस ही बसेस खडी है।

एक ने चश्मा लगाया हुआ है और चारों तरफ हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है।

सड़क के किनारे बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं और उसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

बहुत से घर हैं जो कि सफेद रंग के हैं और एक और दो मिल।

चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी में एक नाव खड़ी है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है पतियों का रंग हरा है आसमान में।

तीन मंजिल पर लाल रंग किया हुआ है और चारों तरफ।

सड़क के किनारे मंदिर है जो कि दो मंजिला है और दूसरे मंजिल पर पीले और सफेद कपड़े पहने हुए आदमी खड़ा है।

चारों तरफ पेड़ों के लाल रंग किया हुआ है पत्तियों का रंग हरा है चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है जो की लोहे की है।

चारों तरफ आसमान सफेद और नीले रंग का है।

अखबार रखी हुई है और कुर्सियां है चारों तरफ फैन रखे हुए हैं और --

चारों तरफ हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है कुछ सूखी पत्तियां आसपास गिरी हुई हैं।

एक आदमी अंदर की तरफ जा रहा है शीशे के दरवाजे लगाए हुए हैं और चारों तरफ कांच ही कांच है।

हरियाली ही हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है आसमान नीले बैंगनी हरे रंग में दिखाई दे रहा है।

सड़क पर बहुत सी गाड़ियां चल रही है बस का रंग सफेद है और शी --

और चारो तरफ चार्ट लगाए हुए हैं अंदर बहुत सी सामग्रियां रखी हुई है जो की कांच के शीशो में है कांउटर लगाए हुए है जिनमे --

पुरुष ने नीले रंग का कोट पॅन्ट पहना हुआ है हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है रात का समय --

यह आदमी लाल और काला पजामा पहने हुए बैठा है चारों तरफ।

के खंबे हैं तारों पर काले रंग का इस्तेमाल किया हुआ है आसमान।

सड़क पे किनारे एक छाता बनाया हुआ है जिसकि चारों तरफ लाइट ही लाइटे लगाई हुई है और --

और अंदर जाने के लिए कांच के दरवाजे हैं दरवाजों के अंदर पुतले रखे हुए हैं जिन पर स --

और चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और कमरे बनाए हुए हैं जिन पर खिड़कियां कांच की है और।

पानी की नहर है जिसमें बहुत से लोग चट्टानों पर बैठे हुए हैं कुछ।

आदमी चट्टान पर लाल और काले कपड़े पहने हुए हैं और एक आदमी संतरी टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए खड़ा है ।

सड़क के किनारे एक गाय खड़ी है जो कि काले और सफेद रंग की है और सड़क के दोनों तरफ हरियाली है जो कि ।